आदमी मास्क लागेएले हेय झोला धएले हेय चप्पल पिन्हले हेय।

साड़ी पिनहले हेय साइकिल आब रहले वहां एगो औरत बैठल हेय एगो मर्दावा टोपी पिन्हले हेय सब्जी सब हेय।

आदमी टोपी पिनहले हय मोटर सालकिल हय सालकिल हय।

उज्जर पैंट पहनले हई ये लड़की हई हई ओढ़नी हई फ्रॉक हई।

पीयर टी-शर्ट पहनले हई जुत्ता पेहनले हई इ आज करिया पजामा पहनले हई।

चॉकलेट - उकलेट कोलगेट - उलगेट हई बरेड - उरेड हई।